एक अंकल खड़े हैं जोकि नि नीली कलर की शर्ट टीशर्ट पहने हैं लोअर पहने हैं। पास में गन्ने रखे हैं।

ये एक परेड हो रही है यहाँ पे सभी बच्चे अटेंशन में खड़े हैं वाइट कलर की ड्रेस पहन कर।

ये एक लेडिज मार्केट में है मार्केट में एक किराने की दुकान है। एक आंटी सब्जी की दुकान लगाके बैठी हैं।

जो लेडीज आ रही हैं उनके पास रेड कलर का केरी बैग है। मास्क लगाई हैं।

ये वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप की दुकान है यहाँ पे एक कार खड़ी है कार के बाहर एक लड़का है वो साइड डीजल की बोतले रखी हैं।

ये एक हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगा है डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे।

बच्चे है बच्चे अलग-अलग तरीके के नये-नये कपड़े पहने है।

एक ओनिडा टाटा स्काई बजाज फिनांसर कंपनी बनी है ऊपर उसके नीचे संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत सारे फ्रिज वाशिंग मशीन्स मिक्सर वगेरा रखे--

यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रहा है कुछ फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है।